अपना दस्तार लगा है उसके पीछे फूल है जो कि पिंक एंड वाइट है।

हमें इस पिक्चर में ये दिख रहा है कि इसमें अ--

बार्बी डॉल्स टेडी बेयर्स डॉल्स गंगारोज हर एक टॉय है उधर शेल्स पे लगा हुआ ऑलरेडी --

इस पिक में हम यह देख रहे हैं कि इसमें --

रोड का देख सकते हैं इसमें आपको ये सब चीजे देखने को मिल जाएगी इसमें आअ गाड़ियां मिलेगी दो चार गाड़ियां इसमें दिखने को मिल--

स्कूल है यह शिमला का मिशन यह कुछ मिशनरी है।